ये देखिए एक पहाड़ सा दिखाई दे रा --

पेड़ है। उधर राशन की भी शॉप है। राशन देके काफी सारे सामान रखी है। नीचे बाइक्स लगी है। उधर देखिये छोटे-छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे है। उधर कपड़े की भी शॉप है।

इन लोग भी इकट्ठे होके सब देख रहे हैं कुछ लोग आगे की उबा उ उ तरफ बैठ बढ़ रहे हैं ।